इस दृश्य में हमें एक हवाई अड्डा दिखाया गया है। यहाँ पर हमें भारत का झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है।

साथ ही साथ हमे दूर नदी भी दिख रही हैआसपार पेड़ पौधे और घर भी दिख रहा है साथ ही साथ आसमान जोकि बोहोत लुभावना लग रहा--

दृश्य हमें क्रिसमस डे के सेलिब्रेशन का लग रहा है। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां सफेद फ्रॉक में नजर आ रही है। इस--

साथ ही साथ उन्होंने सेंटा क्लॉज़ की टोपी भी लगाई रखी है। और दूर देखें तो हमें बहुत सारे लोग टोपी पहने हुए नजर आ रहे हैं।

और यहाँ पर सेल्फी लेने का प्रक्रिया चल रहा है।

और यहां पर औरत और आदमी बहुत सारे मौजूद हैं साथ ही साथ यहां पर बाइके भी पार्क की हुई नजर आ रही है।

एक है यहाँ पर सफेद रंग की एक बोलोरो दिख रही है साथ ही साथ इनके दरवाजे खुले हैं।

दृश्य एक पौधे की दुकान का है। यहाँ पर हमें बहुत सारे फूल के दुकान और पत्तो के भी पौधे नजर आ रहे है।

एक लड़का दिख रहा है जो की आईने में नजर आ रहा है साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि ये लड़का फोन से अपने सेल्फी ले रहा है आईने के अंदर।

दृश्य एक घर के बाहर की है। यहां पर कुछ औरतें एकआदमी और एक एक बच्चा एक छोटे बच्चे को लिए हुए खड़ा है।